देखो गाइस ये दुकान है इतनी मस्त लग रही है। जब सीढ़ीया पोस्टर लगा हुआ है। आदमी बैठा है अंदर देखो एक बाहर बैठा है।

नीला-नीला देखो गेट लगा है बहुत मस्त है नजारा।

बोहोत ही मस्त नज़ारा लगता है। बोहोत ही मस्त कितनी भीड़ है कितना मस्त डांस कर रहा है। --

देखो नाई बाल बना रा बहुत देखो इसकी दुकान बहुत मस्त लग रही है ए देखो ये आदमी इसकी नाई बना रहा है एक के टोपी वाला आदमी बहुत अच्छे लग रहे भाईसाहब ये बहुत ही अच्छी दुकान लग रही बहुत --

ये देखो बोहोत बहोत अच्छा है भाई बहोत ही अच्छा है। इधर से अच्छा कही नज़ारा नहीं हो सकता। देखो पानी के ऊपर से पुल बना है। देखो कितने सारे आदमी यहाँ नहा रहे हैं पानी में।